हम इस तस्वीर में देख रहे हैं। यह जो तस्वीर है। यह एक क्लास की है जहाँ पे स्टूडेंट टीचर से अपनी --

और दो मंजिल बना हुआ है। यहां पे पुलिस है।